यहाँ काम चल रहा है एक मैदान है वहाँ पे कुछ काम चल रहा है झंडा- वंडा लगा हैं।

और यहाँ पे सीढ़ी उढ़ी झूला वगैरा है और यहाँ कुछ कुछ लगा हुआ--

गाडियों का सामान मिलता है ग्राहक आते है सामने खरीदते है और बाहर में बाइक वगैरह खड़ी है और लोग जाते है यहाँ और गाड़ी का समान देते हैं।

ये मोहल्ला है और इधर मैदान है मैदान में बहुत अच्छा धूल है।